पे कुछ झंडे लगे हुए है जो ऑरेंज कलर के है।

गिट्टी रखी हुई है और वर्क चालू है इटो की दीवार बन चुकी है उपर आसमान है।

कॅप पहन के हैं और ऊपर लाइट लगा हुआ है और टेबल्स पे बॅग्स रखे हुए हैं।

और पीछे बॅकग्राउंड में ब्लैक है उसके पीछे बॅकग्राउंड मैं व्हाइट है।

दो लड़के खड़े हुए है एक लड़की खड़ी हुई है डेर सारे टेबल्स है और एक पेपर रखा हुआ है।

और येल्लो कलर्स की ब्लॉक्स के टाइल्स है पीछे मे पेड़ लगे हुए है और साइड मे हरी कलर की नेट लगी हुई है।

इमेज मे पानी दिख रहा है बहुत सारा उसपे कुछ झाड लगे हुए है और एक घर दिखाई दे रहा है और डुबता हुआ सूरज जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

कॉफी स्टोरी लख रखा हुआ है ऑथेटिक कॉफी है मेंटेन सेफ्टी मेजर मेजर अगेंस्ट कोविड नाईन्टीन लिखा हुआ है एक बैनर पे।

पूल बाँदा हुआ है जिसपे कुछ लोग खड़े हुए है।